यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर सब्जी भंडार लिखा हुआ नजर आ रहा हैं।

यहां पर तीन चार कार खड़ी नजर आ रही है।

जिसके दो आंखें दो कान हैं और चार पैर नजर आ रहे हैं।

यहां पर अंदर कुछ लोग नजर आ रहे हैं भगवान की मूर्ति भी दिखाई दे रही --

यहां पर देखिएगा दो तीन बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर एक फिश मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी मछलियां रखी हुई है।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

इस इमेज में यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर फूलों का डेकोरेशन हो रहा है।

एक इमेज में सामने यहां पर एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है रोड पर।

यहां पर डबल बेड लगे हुए हैं उस पर बड़े कंबल भी लगाए गए दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ पर झंडे टंगे हुए हैं और सामने कुछ पेड़ भी --

नीचे कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं और एक कार भी खड़ी नजर आती है।

सामने यहां पर चार बसे येलो कलर की दिखाई दे रहीं --

यहां पर ढेर सारे दरवाजे नजर आ रहे हैं और सामने दीवार पर घड़ी भी दिख --

यहां पर ढेर सारी कुर्सियां नजर आ रही --

जहां पर ढेर सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और आसमान में नीले बादल भी --

और ऊपर लाइटों के झूमर भी दिखाई दे रहे --